जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से इनको कोई इशू नहीं होता है।

सेल किये जाते हैं यहाँ पे विद्यार्थी अपने पढ़ने के हिसाब से जो भी किताब-कॉपी बुक्स लेने हैं वो आराम से ले सकते हैं उसके सहायता से वो अपने पढ़ाई भी पूरा कर सकते हैं।

और लैंडिंग करता है लैंड करता है तो हमारे सामने एक एरोप्लेन है अ वो अम लैंड कर रहा है।

में भी काम मरम्मत के कामें चल रहे हैं बालू हैं अ गिट्टी हैं गिरे हुए हैं रखे गए हैं गिराएं मतलब काम को स्कूल को कम्पलीट करने के लिए प्रिंसिपल भी हैं।